बहुत सारी गाड़ियां खड़ी लगी हुई है।

यह एक शोरूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहुत लंबा और बड़ा हॉल बना हुआ है।

यहां आसमान में बादल छाए हुए हैं।

लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

एक मकान भी बना हुआ है यह काफी सुंदर है।

यहां एक खाली जगह देख रहा है जिसमें घास उगी हुई है।

लोहे से घिरा हुआ दिख रहा है।

बाहर में दो पहिए वाहन पार्क किए गए हैं।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

यहां एक कार्यक्रम चल रहा है।

यहां कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

यहां आसमान काफी साफ दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

मेज एवं बहुत सारे कुर्सियां लगाई गई है।

दीवाल में कॉफ़ी मैक्स एवरीथिंग बैटर लिखा हुआ है।

भगवान बुद्ध का मूर्ति है।

यहां बहुत रोशनी मौजूद है।

दो पहिया वाहन पार्क किए गए हैं।

एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक लोहे का दरवाजा भी लगा हुआ है।

यह काफी साफ सुथरा दिख रहा है।

कारपेट बिछी हुई है।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दो मंजिला मकान भी बना हुआ है।

यहां बहुत सारे लोग भी हैं।

पानी के फुहारे ऊपर उठते हुए हैं।

कुछ किताबें भी रखी हुई हैं।

यहां पे एक लोहे की गेट भी लगी हुई है।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

कुछ खंभे दिख रहे हैं जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक समंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।